आदमी हई यहाँ तीनगो चारगो आदमी हाई उन ने लाइट हाई अथि हाई कथि हाई

वहाँ पे अथि रखा हुआ है जेरोक्ष वाला समान रखा हुआ है वहाँ पे जेरोक्ष के मशीन है यहाँ पे बोतेल है वहाँ पे चैयर है। कुर्सी वहाँ पे पंखा है वहाँ पे--

यहाँ पे एजेंसी है अंदर से बहुत-सा गार गाड़ी लगा हुआ है व्हाइट कलर का ब्लू ब्लैक कलर का हुआ है| यहाँ पे अंदर से ग्राउन्ड है वहाँ पे पीला व्हाइट कलर का पेंट गिरा हुआ है वहाँ पे बाइक लगा हुआ है।

ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है काँच लगा हुआ है वहाँ पे व्हाइट कलर का घर है व --

हरा भरा अथि है घर बन रहल है यहाँ पे हरा भरा घास है।

यहाँ पे अथि गेट लगा हुआ है वहाँ पे अथि है फूल सा हे वहाँ पे भगवान जी है औकरा ऊपर में भी भगवन जी है वहाँ पे वाइट --

वहा पर पे घर है वहा पे टंकी सा लगा हुआ है वहा पे झंडा है।